नमस्कार आप देख सकते है यह एक पुरानी सी पुराने जमाने का बनाया हुआ बुद्ध जिका जो पालेस है और यहा पे देख सकते है की काफी --

यह कहा का रस्ता जा रहा है और यहा पे साइड मे आप देखिये दो स्कूल के व्हेन खड़े है और यह होटल पॅलेस लिखा हुआ है जो ये काफी सुंदर नजार--